और बैलून्स भी दिख रहें हैं रेड ब्लू और व्हाइट कलर की और यहाँ पे टेबुल रखा है व्हाइट कलर का नीचे जमीन में गद्दा भी रखा हुआ है।

यहाँ पर हमे एक मन्दिर दिखाई दे रही है मन्दिर के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे लाइट लगी है पेड़ भी दिखाई दे रहे--

यहाँ पर हमे एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कि अलमारी मे ढेर सारी रेडीमेड शर्ट्स रखे हुए है।

येलो कलर के और यहाँ पे दीवार फेन भी लगा हुआ है यहाँ पे लाइट्स भी लगे हुए हैं।

अ फोटो भी लगे है जिसे लाइट और फूलों से सजाया गया है यहां पर टाइल्स दिख रही है और बॉक्स भी रखे हुए हैं कपड़ों के और --

और यहाँ पर अलग-अलग कलर्स के कपड़े रखे हुए हैं साड़ी रखी हुई है लाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ दिख रहा है।